बाल दाढ़ी वाली दुकान के बाहर--

फाउंटेन बना हुआ है और इस--

गाड़ी नजर आ रही--

है यहां कुछ लोग--

इस फोटो में हमें मे --

नजर आ रही--

कोई रेस्टरें नजर आ--

बोर्ड पर कुछ लिखा--

ये फोटो में हमें एक स्कूल की--

इस पार्क में हमें एक--

इस फोटो में हमें बहोत सारी चूड़ियां और क्लिप --

अपने कंधे पर बैग टां--